कुछ खिड़किया भी दखाई दे रही हैं में आज ही की पिचर्स लगी हुई तस्वीर टाइप की कुछ गर्ल्स नृत्य कर रहीं हैं एक एक लड़की हां खड़ी हुई हैं उ --

कुछ पक्छी बैठे हुए पानी में --

ये एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है दुकान का नाम बाल दाढ़ी है।

तार दिखाई दे रहे हैं।

एक मकान दिखाई दे रहा है मकान में बहुत सारी सब्जिया रखी हुई है क्रेडे दिखाई दे रही है।

एक जेंट्स खड़ा हुआ है इधर पूल के सामने से ग्रीन कुछ पत्थर दिखाई दे रहा है।

उसमें कुछ जेंट्स लोग बैठे हैं शादी हो रही है।

एक स्टूल रखा हुआ है कुछ गमले भी दिखाई दे रहे है गमले में कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ जेंट्स दिखाई दे रहे है जेंट्स खड़े हुए है बैग टांगकर।

ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक अकाडेमी दिखाई दे रही है इस अकाडेमी में बहुत सारी चेयर्स रखी हुई है।

कुर्सियाँ रखी हुई है ग्रीन कलर की पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहा है |

किला टाइप की दिखाई दे रहा है जिसमे पिंक कलर पुता हुआ है बहुत सारे विंडोयें दिखाई दे रही हैं | प्लेन वाइट कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं |

इ दिखा है उम् बादल दिखैत हई ब्लैक वाइट कलर के ग्रीन कलर के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं | गार्डन दिखाई दे रहा है |

मंडप के निचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं | कुछ गर्ल्स बैठी हुई जेंट्स बैठे हुए हैं |

नीले कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर की पेड़-पौधे दिखाई --

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस बिल्डिंग पे तोता कलर पुता हुआ है | कुछ खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं तार दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहा हैं ब्लै वाइट कलर की |

वेल स्कूल करके लिखा हुआ है लोहा का एक गेट दिखाई दे रहा है पिक्चर लगी हुई है।